यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही है जो की सुभे के समय की है यह इमेज एक मोहल्ले में बने एक मस्जित की है यहाँ पर बनी हुई मस्जित का कलर पूरा वाइट--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

छोटे पोधे और बड़े पेड़ है उसी के पीछे हमें एक बड़ा घर दिखाई दे रहा --

यहाँ हमारे सामने स्क्रीन में एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक खली ग्राउंड की है जो की गोलाई में खाली सीमेंटेड है और उसके राईट साइड।